यहां मुझे पूजा का सामान दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कनिका लॉक का बोड दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ टावर दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक टी_वी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ चट्टान दिखाई दे रही है।